यहाँ पे बस है कितना बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है पीछे टावर है यहाँ पे रोड है और कितना--

आसपास पेड़ पौधे हैं हरे भरे और कितना अच्छा सफ़ेद बादल हैं।